latex में report writing पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है मैं इसे latek कह रही हूँ न कि latex
इस tutorial में हम document लिखने के बारे में सीखेंगे
विशेष रूप से report और article class हेतु sections बनाने हेतु सेक्शन्स की नंबरिंग को स्वचालित करने हेतु table of contents बनाने हेतु और शीर्षक पेज बनाने हेतु सीखेंगे
मैं यह tutorial 10000 rupee से कम के laptop पर बना रही हूँ
और मैं ubuntu linux texworks और latex उपयोग कर रही हूँ
आप विन्डोज़ या mac पर texworks भी उपयोग कर सकते हैं – method समान है
आप texworks के बिना भी अपने आप से latex उपयोग कर सकते हैं
ज्यादा कीमती लिनक्स computers उपयोग करने के लिए भी आपका स्वागत है
इसको सीखने की पूर्वापेक्षा निम्न हैं: स्पोकन ट्यूटोरियल्स जो latex का परिचय कराते हैं report dot tex फाइल साइडबाइसाइड मेथड की जानकारी इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आवश्यक हैं
उपरोक्त सभी पर जानकारी हमारी website spoken tutorial dot org पर उपलब्ध है
अब मैं texworks window पर जाती हूँ
मैंने report tex file पहले ही खोल ली है कृपया इस file को download करें और मेरे साथ अभ्यास करें
मैं font size में 12 point a4 paper और article class उपयोग कर रही हूँ
मैं usepackage command से margins set करने के लिए geometry package उपयोग कर रही हूँ
प्रत्येक command कि शुरुआत में एक reverse slash आना चाहिए
यधपि मैं इसे स्पष्ट र्रोप से नहीं कहूँगी आपको reverse slash लगाना नहीं भूलना चाहिए
इसी प्रकार मैं स्पष्ट रूप से ब्रैकेट्स का उल्लेख नहीं करुँगी लेकिन आपको उनका उपयोग करना पड़ सकता है
video में जो किया गया है वही दोबारा करें
usepackage command square brackets में वैकल्पिक parameters रखती है
package का name ब्रैकेट्स में होता है
मैंने क्षैतिज और उर्ध्वाधर margins प्रत्येक 45 cm set किये हैं
texworks window के उपरी बाएं कोने पर देखें
pdflatex पहले से न चुने होने की स्थिति में कृपया इसे pull down menu से चुनें
बायीं तरफ एक arrow के साथ हरा वृत्त है
arrow पर click करें और इस file को compile करें
हमें दायीं तरफ प्रदर्शित report pdf file मिलती है
output file में शीर्षकsection subsection और subsubsection देखें
ये source file में दिए गए समान commands उपयोग करके बनाये जाते हैं
pdf file में इन section शीर्षकों की अलग विशेषताओं को देखें
इन शीर्षकों के sizes आनुपातिक और स्वतः ही बनाये जाते हैं
section शीर्षक सबसे बड़ा और subsubsection शीर्षक सबसे छोटा है
source file में खाली लाइनों के बावजूद output वही रहता है
मैं यहाँ एक line डिलीट करती हूँ compile करती हूँ
कोई बदलाव नहीं है
a5 मैं paper के size को a5 करती हूँ
यह output में प्रत्येक line की चौडाई को कम करेगा
जैसा हमने पहले किया वैसे ही compile करती हूँ
मैं control + दबाकर इसे मैगनिफाइ करती हूँ जिससे आप output स्पष्ट रूप से let सकें
अब मैं इसे centre में लाती हूँ
इस tutorial के शेष भाग के लिए हम केवल a5 paper उपयोग करेंगे आप इसे a4 में भी बदल सकते हैं
ध्यान दें मैंने वह file सेव नहीं की थी यह इसलिए क्योंकि texworks compilation से पहले file को स्वतः ही सेव करता है
अब हम font को बदलकर 10 point तक छोटा करते हैं और compile करते हैं
font size कम हो गया है – क्या hey हैरान होना चाहिए लेकिन आनुपातिक size और स्पेस अभी तक समान हैं
अब मैं font वापस 12 point करती हूँ
अब हम section शीर्षक के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कि चर्चा करेंगे
यह section numbers का स्वचालित generation है
इसे आगे समझाने के लिए मैं inserted section नामक एक नया जोडूंगी
कम्पाइल करने पर यह sequence में सही number के साथ यहाँ दिखता है इस प्रकार latex अपने आप ही numbering का भी ध्यान रखता है
latex toc extension के साथ एक file से table of contents बनाता है
add मैं यहाँ एक शब्द table of contents जोड़ती हूँ
compile करती हूँ
शब्द content output में दिखता है और कहीं नहीं
अब एक बार फिर compile करती हूँ
सारे शीर्षक all पेज numbers के साथ table of contents में उपलब्ध हैं
आपको सही पेज numbers प्राप्त करने के लिए तीसरी बार इसे compile करना है
तीन बार क्यूँ क्रपया नियत कार्य देखें
केवल एक शब्द table of contents वो है जिसकी ज़रुरत है
latex में क्या अद्भुत क्षमता होती है
यह toc extension के साथ एक file से प्राप्त होता है जो latex बनाये रखता है
यह multi pass compilation प्रक्रिया शीर्षकों में बदलावों के साथ भी कार्य करती है
अब मैं section शीर्षक को modified section से बदलती हूँ
अब compile करती हूँ table of contents नहीं बदलता
इसे एक बार फिर compile करती हूँ और समस्या को हल करती हूँ
अब हमारे पास यहाँ एक संशोधित section है
हम इस document के लिए एक शीर्षक बनायेंगे मैं इसे यहाँ begin document से बिल्कुल पहले करती हूँ
मैं निम्न की तरह title author की जानकारी और date लिखूँगी
अतः मैंने ये तीन commands जोड़ दी हैं
ये किस क्रम में या किस स्थान पर आते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता
लेकिन ये begin document command से पहले आनी चाहिए
सभी commands में reverse slash लगाना न भूलें
यहाँ double slash का मतलब है अगली line हम इसे compile करते हैं
pdf file में कोई बदलाव नहीं हैं
इसका कारण है कि हमने latex से नहीं कहा कि इस जानकारी के साथ the करना है
अतः मैं begin document से बिल्कुल पहले एक शब्द make title command जोडती हूँ
इसे compile करती हूँ
title output में उस स्थान पर दिखता है जहाँ मैंने इस command को रखा
यानी इस document की शुरुआत में
अब हम इस document के class को article से report करेंगे
इसके साथ ही हम इस command के साथ एक chapter: chapter first chapter परिभाषित करते हैं
report style को कम से कम एक chapter की ज़रुरत है
अब इसे compile करते हैं और output देखते हैं
output में बदलावों को देखें
शीर्षक बिना पेज number वाले पूरे पेज पर दिखता है
contents भी पूरे पेज पर पेज number 1 के साथ दिखता है
कृपया यहाँ रोकें और पता लगायें कि contents में कितनी प्रविष्टियाँ गलत हैं
अब अगले पेज पर जाते हैं chapter शुरू होने का तरीका देखें
आपने कितनी ख़ास विशेषताओं का पता लगाया आपको कम से कम पाँच खोजनी चाहिए
इसे दूसरी बार compile करते हैं
देखें कि अब contents पेज सही जानकारी रखता है पेज numbers अब ठीक हैं
add new chapter नामक एक chapter जोड़ते हैं
इसे compile करते हैं
इसे फिर से compile करती हूँ और देखें कि यह नए पेज पर आता है
इस chapter से पहले appendix command प्रविष्ट करें
कम्पाइल करने पर आप देखते हैं कि शब्द appendix दिख रहा है
chapter number a है
अब slides पर जाते हैं
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा
latex में एक document लिखना स्वतः ही chapter और section शीर्षक बनना स्वतः ही नंबरिंग table of contents और शीर्षक पेज बनाना appendix बनाना
अब मैं कुछ नियत कार्य देती हूँ
यह नियत कार्य a4 paper और letter paper पर है
video रोकें slide पढें और नियत कार्य करें
यह नियत कार्य font size पर है
यह report dot toc पर है
यह compilations की संख्या पर है
table of contents के स्थान पर है
यह नियत कार्य report और article में chapter command के उपयोग पर है
यह नियत कार्य report class में appendix command के प्रभाव पर है
यह नियत कार्य पिछले नियत कार्य जैसा ही है लेकिन article class में है
यह geometry package पर है
सामान्यतः यह नियत कार्य latex classes पर है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं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
हम spoken tutorials उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं प्रमाणपत्र देते हैं क्रपया हमसे संपर्क करें
क्या आपको इस spoken tutorial में कोई प्रश्न है
इस site पर जाएँ जहाँ आपको प्रश्न है उसका minute और second चुनें
अपना प्रश्न संक्षिप्त में पूछें हमारी team से कोई व्यक्ति उनका उत्तर देगा
spoken tutorial forum इस tutorial पर विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें
यह अव्यवस्था में मदद करेगा कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं का उपयोग शिक्षण सामग्री की तरह कर सकते हैं
spoken tutorials में कवर नहीं किये गए विषयों के लिए इस address पर stack exchange पर जाएँ
यह latex पर उत्तर प्राप्त करने का अच्छा स्थान है आप कार्यशालाओं प्रमाणपत्रों आदि पर भी प्रश्न कर सके हैं
इसके लिए इस email address पर हमारे साथ संपर्क में रहें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
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है मैं जाया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद